सामने सफेद कलर वाला मार्कर का ईऊस करे खातिन बोर्ड बा ओपे पढ़ाई करेन सब।

इ सूर्यांश टुटोरिअल्स है जोन यहाँ कोचिंग क्लास चलेला। लड़का सब पढाई करे ने यहाँ --

ये कक्षा हयहाँ पर विद्यार्थी लोगआराम से मास्क लगाके पढ़ाई-ऐ-परीक्षा देत हउएं --

अपने-अपने जगह आराम से बईठल हऊवन साथ में खिड़की है ए.सी. लगल ह। प्रोजेक्टर मशीन भी ह। चारों तरफ से लाइट क व्यवस्था ह।

काँटोमेन्ट के अंदर डाक विभाग का ऑफिस है जहाँ कि सामने का ऑफिस का गेट है यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी हैं --